और काउन्टर है। उसपे ए माताजी की स्टिकर लगा है दोनों तरफ और ब्लू कलर का काउन्टर है और पास का --

एक ग्राउंड है यहाँ पे दो गो दो तीन पोल लगे हुए हैं और पीछे बहुत सारे घर बने हुए हैं वहाँ पे एक गली है।

ब्रिज है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। बोहोत बड़े बड़े पिलर हैं। मोटे मोटे ब्रिज के नीचे और एक लाइट का खंबा है।

बो और नीचे समुंदर है और अ किनारे हैं वहाँ पे बहोत सारे कीचड़ है। एक रोड जाते हुए दिख रहा है और बहुत सारे अ पेड़ लगे हुए हैं।